एक बड़ा सा स्टैंड है उन स्टैंडो में सामान रखा हुआ है।

लगा हुआ बना हुआ है यहां पे बड़े बड़े--

वगैरह भी रखी हुई है उसके साथ ही एक खंभा बना हुआ है।

कोई आगे एक शिविर भी बना हुआ है उसके बाद सारे भी बने हुए है।

यह एक स्कूल है स्कूल में एक लोहे का गेट काला सा लगा हुआ इस पर ताला लगा हुआ है इधर व्हाइट कलर येलो कलर का पेंट भी किया हुआ है।

ब्लैक कलर की टी शर्ट पेहने रखी है और रेड कलर का--

यह एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पर बहुत सी भीड़ लगी हुई है जहां पर एक साइड में और एक साइड में--

और उस घर के ऊपर एक छत्री बनी हुई है जहां पर बहोत से कमरे भी--

यह एक पारक है पारक में झूले लगे हुए है इधर कुछ गमले भी लगे हुए हैं इन गमलों में फूल है।

पीले कलर का और बाइक में खड़ी हुई है जो ब्लैक कलर की है उसके साथ ही कुछ दुकानें भी है पे जहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं।

साइड में एक बाइक भी और खड़ी हुई है और घासें भी है।

एक बड़ा सा मंदिर है मंदिर के बाहर कुछ लोग भी लोग खड़े हैं और एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी कार में बैठा हुआ है।

एक बड़ी सी कम्पनी की दुकान है।

पेड़ लगा हुआ है और साइड में कुछ गमले छोटे हैं जिनमे एलमीरा वगैरा लगा हुआ हैं।